ये एक स्टेशनरी का दुकान है यहाँ --

अ देखिये पानी का जो फुहारा है ये --

ये साहब है सैलून में आए हैं।

विशेष कर के देखने में फोटो को जहां तक देख कर के ऐसा प्रतीत हो रहा है --

यहाँ पे संभवतः यह रात समय है।

और बाजार है संभवतः यह।

और काफी बड़ा ब्रांच है।

ए गुलाबी और सफ़ेद कंम्बल ओढ़ कर सोया हुआ है जैसे --

बैठने का जो सीटर है उसमें चार-पांच आदमी आराम से बैठ सकते हैं।

स्टाइल होता है उसका ऐड्वर्टाइज़ करते हुए बल्ब बहुत रो-रौशनी दे रहा है |

और कलम-कॉपी से ले कर के खाद्य पदार्थ भी आप यहाँ पे खरीद सकते हैं |

और इसके सामने विशालकाय एक वृक्ष भी है जो काफ़ी अच्छा दिख --.

और ये काफी सुंदर ये दृश्य है |